और काफी ज्यादा खुली है जहां--

ये काफी ज्यादा सुंदर और बड़ी है।

स्टॉल से दिख रहे हैं जहां टेबल एंड चेयर लगे हैं।

और दुकान काफी धुली है। काफी सामान दिख रहा हैं।

गुलाब दिख रहा है.

जो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है।

यहां पर मुझे--

बिल्डिंग जो है जो काफी सुंदर है।

जो काफी ज्यादा बड़ी है और साफ सुथरी है यहां कुछ लोग कर रहे हैं।

सजावट की हुई है बाहर टेबल एंड चेयर है काफी ज्यादा भीड़ है.

ऑफिस अंदर है और यहां मिरर लगा हुआ है।

लौटे लगे हुए हैं बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है।

एक कपड़ों की दुकान दिख रही है.

जो काफी पुरानी लग रही है और काफी बड़ी लग रही है.

साफ सुधरी है जहा पेड़ पौधे दिख रहे है और एक लंबा सा रास्ता दिख रहा है।

यहां पर एक जिम दिखाया गया है जो काफी बड़ा है और--

हैंड मिरर्स लगे हुए हैं साफ सुथरा जिम है।